यह ट्यूटोरियल ब्लेंडर 259 में फाइल ब्राउजर और इन्फो पैनल के बारे में है
यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है और आवाज यश वोरा द्वारा दी गई है
इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद हम सीखेंगे कि फाइल ब्राउजर और इन्फो पैनल तथा दोनों में उपलब्ध विभिन्न ऑप्शन्स क्या हैं
मैं मानता हूँ कि आप ब्लेंडर इंटरफेस के बुनियादी तत्वों के बारे में जानते हैं
यदि नहीं तो कृपया हमारे पिछले ट्यूटोरियल ब्लेंडर इंटरफेस का बुनियादी विवरण का अनुकरण करें
3डी व्यू के नीचे बाएँ कोने पर एडिटर टाइप मेन्यू पर जाएँ
मेन्यू को खोलने के लिए बायाँ क्लिक करें
इसमें ब्लेंडर में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के विडोंज की सूची है
फाइल ब्राउजर पर बायाँ क्लिक करें
यह फाइल ब्राउजर है
यहाँ हम अपनी सभी ब्लेंडर फाइलें पा सकते हैं जो हमारे सिस्टम में सेव हैं
ये चार ऐरो बटन हमें अपनी डाइरेक्टरी के अंदर चारों ओर स्थानांतरित होने में मदद करते हैं
बैक ऐरो हमें हमें पहले के फोल्डर पर ले जायेगा
कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए बैक स्पेस दबाएँ
फॉरवर्ड ऐरो हमें अगले फोल्डर पर ले जायेगा
कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए shift और backspace दबाएँ
अप ऐरो आपको वर्तमान डाइरेक्टरी पर ले जायेगा
कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए प दबाएँ
रिफ्रेश बटन आपकी वर्तमान डाइरेक्टरी पर फाइल की सूची को रिफ्रेश करेगा
क्रिएट न्यू डायरेक्ट्री आपकी वर्तमान डाइरेक्टरी के अंदर नई फोल्डर या डाइरेक्टरी बनायेगा
ये बटन्स आपको आपकी फाइलों और फोल्डरों को क्रमानुसार व्यवस्थित करने में मदद करेंगे
फिल्टर बटन आपकी डाइरेक्टरी में फाइलों को फिल्टर करने में सक्षम करेगा
फिल्टर टैब के आगे मौजूद केवल सक्रीय आइकन्स ही डाइरेक्टरी में दिखाई देंगे
तो यह ब्लेंडर में फाइल ब्राउजर विंडो के बारे में था
एडिटर पर जाएँ फाइल ब्राउजर के ऊपरी बाएँ कोने पर मेनू टाइप करें
मेन्यू को खोलने के लिए बायाँ क्लिक करें
3डी व्यू पर बायाँ क्लिक करें
हम वापस डिफॉल्ट ब्लेंडर कार्यक्षेत्र पर आ गये हैं
अबinfo पैनल देखते हैं
ब्लेंडर इंटरफेस में सबसे ऊपरी पैनल इन्फो पैनल है मुख्य मेन्यू पैनल
फाइल पर बायाँ क्लिक करें
यहाँ हमारे पास हैं- ओपन आ न्यू या एएन एक्सिस्टिंग फाइल सेव थे फाइल यूजर प्रेफरेंस विंडो तथा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑप्शन्स
ओपन पर बायाँ क्लिक करें
यह फाइल ब्राउजर के समान ब्राउजर खोलेगा
आप यहाँ से ब्लेंडर फाइल खोल सकते हैं जिसे आपने पहले से ही अपने सिस्टम पर सेव किया हुआ है
फाइल खोलने से पहले लोड यूआई एक्टिवेट करना आपको यूजर इंटरफेस या यूआई के साथ ब्लेंडर फाइल खोलने के लिए मदद करेगा
जिसे आपने उसी के लिए सेव किया है
ओपन फाइल विंडो से बाहर आने के लिए बैक टो प्रीवियस पर बायाँ क्लिक करें
एड में विभिन्न ऑब्जेक्ट्स की रिपोजिटरी शामिल हैं जिन्हें आप अपने सीन में जोड़ सकते हैं
एड पर बायाँ क्लिक करें
यहाँ ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी है
हम इस मेन्यू का उपयोग करके 3डी व्यू में नए ऑब्जेक्ट्स जोड़ सकते हैं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
अब 3डी व्यू में एक प्लेन जोड़ें
3डी कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए स्क्रीन पर कहीं भी बायाँ क्लिक करें
मैं यह स्थान चुन रहा हूँ
एड मेन्यू के लिए Shift और आ दबाएँ
प्लेन पर बायाँ क्लिक करें
3डी कर्सर के स्थान पर 3डी व्यू में एक नया प्लेन जुड़ गया है
3डी कर्सर के बारे में जानने के लिए कृपया ट्यूटोरियल नेविगेशन - 3डी कर्सर देखें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
अब वापस इन्फो पैनल पर जाएँ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
रेंडर में इमेज या विडियो रेंडर ऑप्शन्स हैं जैसे रेंडर इमेज रेंडर एनिमेशन शो या हाइड रेंडर व्यू आदि
रेंडर सेटिंग्स बाद के ट्यूटोरियल्स में विस्तृत रूप से सीखेंगे
इन्फो पैनल में हेल्प के आगे स्क्वेयर आइकन पर जाएँ
यह है चूसे स्क्रीन लेआउट यह हमें डिफ़ॉल्ट ब्लेंडर इंटरफेस दिखाता है जिस पर हम कार्य कर रहे हैं
चूसे स्क्रीन लेआउट पर बायाँ क्लिक करें
यह सूची आपको विभिन्न लेआउट ऑप्शन्स देती है
एनिमेशन कंपोजिटिंग गेम लॉजिक वीडियो एडिटिंग
आप अपनी आवश्यकतानुसार किसी को भी चुन सकते हैं
चूसे स्क्रीन लेआउट से बाहर आने के लिए ब्लेंडर स्क्रीन पर कहीं भी बायाँ क्लिक करें या अपने कीबोर्ड पर Esc दबाएँ
सीन वर्तमान सीन दर्शाता है जिस पर हम कार्य कर रहे हैं
तो यह इन्फो पैनल के बारे में था
अब ब्लेंडर में फाइल ब्राउजर का उपयोग करके अपने सिस्टम पर एक नयी डाइरेक्टरी बनाने की कोशिश करें
फिर स्क्रीन लेआउट को डिफॉल्ट से एनिमेशन में बदलें
और यह फाइल ब्राउजर और इंफो पैनल पर ट्यूटोरियल को पूर्ण करता है
यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है
इस पर अधिक जानकारी इन वेबसाइट्स पर उबलब्ध है
oscariitbacइन एंड spoken tutorialorgnmeict इंट्रो
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट - स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाता है
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं
अधिक जानकारी के लिए कृपया इस पर संपर्क करें contactspoken tutorialorg हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद